लड़का जिम में खड़ा है वो शीशे में अपनी सेल्फी ले रहा है।

शोरूम है बहुत ही ज्यादा स्कूटियां अच्छे तरीके से--

है ब्लू कलर का सारा फर्नीचर जो है।

सामने एक लड़की बैठी हुई है वो एक लड़के से बात--

कोई है बहुत ही सुंदर ये बड़ा हॉल है।

कोई पूजा चल रही है शोभा यात्रा निकाल रही।

है बहोत ही सुंदर सजाया हुआ है ये एक--